और ये दोनों साहिल बालू पे बैठे हुए है सामने एक दीवाल है जो सफ़ेद रंग की है।

यह रनवे है जहाँ पे बोहोत सारी फ्लाइटें लगी हुई हैं।

और छोटी-छोटी घासे हैं इसके फर्श पर।

यह एक समन्दर है जिसमें बहोत सारी छोटी-छोटी मछलियाँ है जो एक समूह है।

और जा रहा है। एक मोटरसाइकिल कुछ ऑटोज़ भी ई-रिक्शा भी चल रहे हैं।

रखी हुई है। एक आदमी है जिसको ले रहा है। बगल में और भी दुकानें हैं जिसपे आदमी खरीद रहा है।

वो भी लगी हुई है। कुछ गोड़ीया गाड़ियाँ इधर से उधर जाते हुए भी दिख रही हैं।

उन सब अपने डेस्क पे पेपर मे लिख रहे है पेन से सब ने मास्क लगा रखा है।